ये पर लोग छन दिखेणा कुर्शी परन जो बैठ्यां नाई यख खड़ा होयां बालन काटोंण लग्यां अगाड़ी नाई एक का बाल काटणु कुछ लोग पिछाड़ी इंतजारन किर्सी मा छन बैठ्यां भितर नारंगी कलर होयुं।

पोस्टर लग्युं नीलू सि बड़ु पोस्टर वख्म ए.सी. लगीं एंच बिटिन पिछाड़ी दुई तीन लोग औरन दिखेणा सड़क दिखेणी।

यखम एक दुकाना दिखेणी दुई तीन मंजिल घर दिखेणु जै पर जन टाटा स्काई बजाज और बहोत सारा पोस्टर लगायां इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान रखीं।

एक आदमी छ जू फोन फोटो खींचनु एटीएम की एटीएम पर जाना का बाटों ऊडें फडें गमलान गमलों पर फूलन लगायां।

बगलम पाणी दिखेणु पिछाड़ी बिटिन बच्चा लोगन दिखेणा जू बातकों त देखण आयां यखम पत्थर दिखेणा बरिक-बरिक पत्थर बड़ा-बड़ा पत्थर दिखेणा पिछाड़ी बड़ा-बड़ा डालान दिखेणा आसमानी दिवार दिखेणी।

पिछाड़ी एक बड़ु डालु दिखेणु आसमान दिखेणु ज़मीन दिखेणी।